जहाँ पर एक सड़क है और उस पर और एक गाड़ी खड़ी हुए है।

उम्म घर के आगे कुछ औरत भी खड़ी हुई है घर के बहार एक आदमी --

ये एक रिक्शा है। ये किसी पार्क के बगल में खड़ा हुआ है।

और वे बहुत सुंदर लग रहा है और --

कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और --

पे कुछ लाइटें रेड कलर की कुछ लाइटें गुलाबी कलर की कुछ लाइटें गोल्डलर कलर की लगी हुई --